वह बाजा बजा रहें है ऊपर में बैठ कर--

ब्लू कलर के हैं और घर पूल-उल भी जगाए--

कुछ बातचित कए रहे शायद यहाँ लाइट्स भी लगे हुए हैं पौधे भी हैं हरे-भरे--